हमे एक बहोत ही सुंदर पहाड़ों का दृश्य दिखाई दिया गया है इस पिक्चर के अंदर --

मूली पड़ी हुई है साथ में हमें टमाटर व कद्दू भी दिखाई दे रहा है व स्कैनर भी पड़े हुए हैं।

इसमें कई सारी मिठाइयां बड़ी हुई हैं व साथ में एक आइसक्रीम का बड़ा बॉक्स पड़ा हुआ है।

पहले स्कूटी का रंग नीला प्रतीत हो रहा है जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक लिखा हुआ है दूसरे स्कूटर का रंग --

हिंदी के अक्षर मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय उत्तर पश्चिमी रेलवे बीकानेर है व दूसरी साइड इंग्लिश में --

रीजनल रेलवे मैनेजर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे बीकानेर लिखा हुआ है।

ये दृश्य हमे एक इलेट्रिकल शॉप का दिखाई दे रहा है इसके अंदर हमें कई सारी प्रेस पड़ी हुई दिखाई दे रही है।

वे वाशिंग मशीन व फ्रिज भी पड़े हुए हैं इसमें हमे एक आदमी भी बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।

ये दृश्य सड़क के उस पार बने हुए एक हॉस्पिटल का है।